आप इस फोटो में देख पा रहे है कि प्लेनेट ऑफ डांस का यहां पर स्टूडियो ओपन हुआ है।

कैंपर भी यहां देखने को आपको मिल जाएगा एयरटेल का डिश टी_वी भी यहां लगा --

एक छोटी टेबल भी लगी है इंटीरियर भी काफी अच्छा है।

बिल्डिंग का काम चल रहा है।

बहोत ही अच्छा इंटीरियर इसने किया है।

इस फोटो में आपको एक बहुत ही स्मॉल एंड सुंदर रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई गई है।

और बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मिक्सर ग्राइंडर यहां पर --

इस पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी भी आपको नज़र आ रही है।

एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया गया है जिसमें झरना बह रहा है पहाड़ियां हैं।

इस फोटो में देखने से यही पता चल रहा है कि कोटा डोरिया की साड़ी --